काफी बड़े-बड़े पंखे भी लगे हुए हैं।

जिसकी छत भरी जा रही है।

ये फोटो किसी पहाड़ी इलाके की दी हुई है।

बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी बनी हुईं हैं।

गार्डन की फोटो दिख रही है।

जहां बिल्कुल गली में दिख रहा है।

कई सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां के बैनर में एक आदमी को दिखाया जा रहा है।

काफी ज्यादा ठंड जैसा माहौल भी बना हुआ है।

यहां पर दो बड़ी चट्टाने भी नजर आ रही हैं।

ये किसी जंगल की फोटो लग रही है।

यहां पर एक कार खराब हो गई है।

ये एक चर्च की फोटो लग रही है।

यहां पर एक आदमी फोटो भी खींच रहा है।

ये फोटो एक लौंड्री लैब की दी हुई है।

और इस बोर्ड में लिखा है वी कैर युअर फेवरेट ।

ये फोटो किसी खूबसूरत से पार्क की लग रही है।

इस गार्डन में कई सारे बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

बसों की संख्या काफी ज्यादा लग रही है।

और चीनी के बर्तनों की दुकान भी है।

ये फोटो किसी घर की लग रही है।